पता नहीं इतना खतरनाक हमको लागत आहय नी इतना खतरनाक मछरी हे के नी देखत ता पूरा नीला कलर मस्त बड़का बड़का मछरी हे लागत हे की कार्टून बर्फ से निकलइ ह --